घूमने के लिए बहुत सारे लोग है। बहुत भीड़ हुआ है।

ये एक एक बहोत ही बड़ा घर बनाया जा रहा है। जो की इस घर को आज ढाला जा रहा है। बहुत सारे लेबर मिस्त्री आए है। इसमें काम करने के लिए ।